हम यहाँ पे दो व्यक्ति को देखते हैं।

छत का रंग सफ़ेद है और उसमें कई सारी लाइटें लगी हुई है।

कई सारी रंग-बिरंगी पुस्तक रखी हुई है लाल हरी नीली पिली।

एक सफेद बोरी एक क्रेन से लटक रही है ।

एक कोने में एक उसका गेट है। जिसमे की नीले रंग की शटर लगी हुई है।

पेड़ के पत्तों का रंग हरा है और खुला आसमान है जिसका रंग नीला है ।

एक मोटर बाइक पर दो लोग सवार है।

एक कपड़े का बड़ा सा मॉल लग रहा है।

पंडाल में कई सारे रंग-बिरंगी कपड़े और लाइटे भी लगी हुई है।

जिसमे गेंदे की माला चडी हुई है।

जमीन में लाल और हरे रंग की कालीन बिछी हुई है।

कई सारे गेट भी हैं जिसका रंग सफ़ेद है।

एक खुली वाटिका है जिसमें की बीच से एक सड़क जा रही है जिसका रंग नारंगी और गुलाबी है।

सामने ही दरवाजा का एक कोना भी दिख रहा है।

जिसमें की नीले रंग का पाड़ लगा हुआ है वो खड़ी है ।

छोटी सी एक टेबल फैन भी एक मेज के उपर रखी हुई है।